हरे कलर के पर्दे पड़े हुए हैं और नीचे फर्श पड़ी हुई है।

ये एक होटल है। होटल देखने में बहोत बड़ा और बोहोत ही अच्छा है।

यहाँ पे बहोत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और इसमें विंडो बनी हुई है।

अन्दर बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और यहां पे गाड़ी पार्क भी है।

आपस में बातें कर रहे हैं और इसके चारों ओर से दिवाले बनी हुई है।

इसमें बहुत सारी टेंट लगी हुई है और हरे और लाल कलर की मिट्टी बिछी हुई हैं।